वही इसकी उल्टे साइड नदी के हमे बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

यह फोटो एक स्कूल का है जहा पे हमे एक स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दे देरही है जोकि पिंक रंग की है।

लकडिया है व इसके व अ अपोजिट साइड बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है।

वही हमें ऊपर में एक पंखा लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है वही बगल में एक सी.सी.टी.वी कैमरा भी दिखाई दे रहा है।

यह फोटो मॉल का है जहा पे हमे घर की बहुत सारी सामने राखी हुई दिखाई दे रही है सामने पे हमे घर के खाने वगेरा की सामाने भी दिखाई दे रही है जैसे की बिस्कुट वगैरा ह--

और इसका नंबर एम_एच ज़ीरो थ्री बी_ई डब्बल एईट फोर सेवन है।

यह फोटो एक कार का है जो की रेड व--

बहुत सारी गड़ियाँ दिखाई दे रही है और उधर ही हमे ये बिजली का खंबा भी दिखाई दे रहा है।